यहां एक मूर्ती लगी है जिसपे माला लगी हुई है।

यहां बहोत सारी स्लाइड्स हैं यहां दो पुल है पुल में लोग नहा रहे हैं।

जो सनवर रोड इंदौर में है।

यहां साड़ी लगी हुई है।

जो भारत पेट्रोलियम की है यहां एक--

यहां से पहाड़ दिख रहे हैं।

जो अपनी बॉडी दिखा रहा है।

सफेद रंग के शू पहने हैं।

एक बच्चा कुर्सी पर बैठा है।

यहां बहोत सारी पेने मिलती है।

यहां एक आदमी रंगोली बना रहा है।